इस फोटो में हमें सामने की ओर एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें साइड में एक एल_ई_डी लगी हुई है।

और साथ ही में कुछ मुर्गे ऊपर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

दुकान के बाहर एक खंभा भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

पास ही में गमलो में कुछ पौधे भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

पास ही में एक सीढ़ी भी नजर आ रही है।

फोटो में हमें सामने की ओर एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है।

पास ही में दो ईंटें भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर की ओर कुछ विंडोज भी दिखाई दे रही है।

पीछे की और भी कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने सड़क पर कुछ कारे भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

यहां पीछे की ओर कुछ बाइक भी खड़ी हुई हैं।

सामने की ओर एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में हमें सामने की ओर एक टेंपल दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक गेट भी लगा हुआ है।